दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौंधे दिखाई दे रहै है। घास दिखाई दे रहा है झाड़िया दिखाई दे रहा है ओर अंडर कन्स्ट्रकशन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत से ब बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पीछे मैडम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यहा कूछ लेडीज दिखाई दे रहे। कुर्सी दिखाई दे रहे। खिड़की दिखाई दे रहे। पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं बलून दिखाई दे रहे हैं टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं कोई व्यक्ति सांताक्लॉस बना हुआ है सभी लोग टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे हमे बहोत से बच्चे दिखाई दे रहे है ब भैया बच्चे कुछ बनाते हुये दिखाई दे रहे है पेड़ पौंधे दिखाई दे रहे है घास दिखाई दे रहे है झाडीया दिखाई दे रहे है दिन का समय लग रहा है पीछे मे गमला दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे हैं। खिड़की दिखाई दे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। आसमान दिखाई दे रहा हैं। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग दिखाई दे--

यह स्कूल का तस्वीर लग रहा हैं जहाँ बच्चे कुछ बना रहे हैं। दिन का समय लग रहा हैं। वहां से खिडकी दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।